सामने एक स रास्ता कच्चा रास्ता जा रहा है किसी गांव का है ये --

यह किसी पार्क का जगह है खूबसूरत और सामने कुछ क्रांति वीरों की प्रतिमा है --

और उसके आसपास में उह सामने कोई --

अपना कुछ काम या कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं।

किराने के दुकान का नाम तुलसी किराना जनरल स्टोर है और सामने बहुत सारे --